यहां बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं।

इसके अंदर एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पे_टी_एम इंग्लिश में भी दरवाजे पर लिखा हुआ है।

जैसे मैगी चाय पत्ती चीनी चावल राजमा छोले--